सामने की तरफ एक फुल व्हाइट शीट लगी हुई है यहां पर बैलून का डेकोरेशन है व्हाइट एंड ब्लू एंड यहां पर दो लोग है चेयर्स की तरफ देख रहे है चेयर्स को रेड कलर से ढाका हुआ है वो काफी ब्यूटीफुल लग रहा है।

ये कोई खेत नजर आ रहा है जहाँ पर आस-पास काफी छोटे-छोटे पेड़ दिख रहे है और काफी साफ लग रही है यहाँ पर पर कुछ बड़े पत्ते भी दिख रहे हैं।

यहाँ पर काफी लोग भी अंदर की तरफ नजर आ रहे है कुछ आ रहे है और कुछ बाहर की तरफ जा रहे है।

यहां पर गुंबदे दिख रही है तीन बड़ी-बड़ी जो कि ग्रे कलर की शाइन कर रही है और यहां पर एक मैन भी है जो अंदर जाते हुऐ दिख रहे है।

ये एक डॉक्टर की क्लीनिक है जहां पर ब्लैंक कलर का टेबल चेयर और साइड मे एक स्टूल मोजूद है और उनके डेक्स पर एक केलेण्डर एंड एक टॉर्च और बी.पी. की मशीन और लैपटॉप भी मौजूद है।